यह मैदान काफी बड़ी है इस मैदान में ग्राउंड भी है यहां पर लोहे के जाली लगाया हुआ है इस ग्राउंड में बहुत से बच्चे खड़े हैं इस मैदान में एक गाय भी चर रही है बच्चे उसे गाय को देख रहे हैं।

च यह चर्च काफी बड़ा है यहाँ पर शुकरवार के दिन बहुत से क्रिस्टियन आ कर चर्च देते हैं इस चर्च के किनारे एक मैदान भी है इस मैदान में एक ग्राउंड भी है ।

यह मैदान काफी बड़ा है इस मैदान में गुल की फैक्ट्री भी है इस मैदान में बड़े-बड़े पेड़ भी हैं इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े घर भी हैं यह मैदान काफी सुंदर दिखा रहा है इस मैदान में पशु पक्षी भी रहते हैं यहां पर --

यह मैदान काफी बड़ा है इस मैदान में लोहे के पल जैसा बनाया हुआ है यहां पर अनेक सारे लोहे के समान है यहां पर इस मैदान में बहुत सारे बच्चे घूमने आते हैं यहां पर तरह-तरह के खेल खेले जाते हैं।